यहां पर बहुत सारी दुकाने है मिट्टी गिरी हुई है और सड़क कच्ची है।

-- और एक आदमी मास्क लगाए हुए कुछ ले रहा है और बड़ी-सी दुकान है और बहुत सारा सामान रखा हुआ है यहाँ।

हे गाइज यहाँ पर एक आदमी बैठा है येलो कलर की टी-शर्ट पहनके और एक चेयर पर बैठा हुआ है और कुछ स्टूल पे रखा हुआ है।

और ये दिन का नज़ारा है दिख रहा है में खड़ा है।